सजाया गया है और बहुत ही शानदार इसकी सजावट की गई है और चारों तरफ लाल कलर की बाउंड्री बनाई गई है लोहे की।

यहां पर यह जिम का नजारा है यहां पर टेबल रखा हुआ सफेद कलर का टेबल के ऊपर दो मशीन दे रखी हुई है और पास ही एक चेयर रखी हुई है।

और बाउंड्री में बहुत सुंदर बारीकी से नक्काशी की है जिसमें रंग बिरंगे पेंट लगे हुए हैं लाल--

लाइटिंग से कुछ दिख रहा है हॉस्पिटल लिखा हुआ है उसके नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। सामने एक कार खड़ी हुई है और ऊपर में एक और बोर्ड लगा हुआ जिसमें वो स्कार लिखा हुआ है।

और पास एक हिरण रखा हुआ है और आगे चलकर एक व्हाईट कलर की कार खड़ी हुई है।

सब्जियों का और उसके आगे एक औरत खड़ी हुई है और बहुत सारा सामान दुकानों में लटका हुआ है और लोग कुछ जा रहे हैं आगे की ओर।

यहाँ पर एक बड़ी सी ब्रिज दिखाई दे रही है ब्रिज के नीचे एक आदमी खड़ा जिसने लाल कलर की शर्ट पहनी काले कलर का पेंट पास एक औरत खड़ी हुई है।

यहाँ पर ये बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें पूरा व्हाईट कलर का दिख रहा है व्हाईट कलर की इसमें पूरी पेंटिंग है।

पैंट से और दोनों तरफ अगल-बगल एक तरफ गुलाबी कलर का छतरी सा लगा हुआ है गुलाबी एक तरफ हरी कलर का और यहाँ नीचे लोग खड़े हुए हैं।

बड़ी-बड़ी फ्रिज रखी हुई है आगे चलकर कुछ और अलमारियां रखी हुई हैं ऊपर पंखा लगा हुआ नीचे सफेद कलर की टाइल्स है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए हैं।

यहाँ पर ये बड़ी सी टैटू की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर ऊपर बहुत बड़े-बड़े अक्षरों में टैटू लिखा हुआ है।

यहां पर ये राज स्वास्थ्य एवं प परिवार कल्याण क का बिल्डिंग दिख रहा है जहां पर सामने--

खड़ी हुई है और कुछ एजेंट्स भी खड़े हुए हैं।